उम वह भी बस पे चढ़ने आ रहा है। एक बस से ए एक आदमी खिड़की से बाहर की और देख रहा --